आगे के आगे पार्क भी लगता गाडी पार्क में बसों बा का मस्त बा एकदम पूरा।

आगे में एगो बच्चा जाता है मोर में चिड़िया घर--

जैसे गाड़ी चल रहल बा टु व्हीलर ठीक बा सुहाना एकदम पूरा मौसम बा पीछे-पीछे पोल बा।